और एक बड़ा सा टावर भी है।

जघा है जहां पे बहोत सारे भेड़ और बकरियो को चारा खिलाया जा रहा है।

और यह कार लाल कलर का है यहां पे दो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं।

यह एक गैराज है जहां पे काले कलर की गाड़ी रखी हुई है और इस गाड़ी में--

दो से तीन वर्कर ही दिखाई दे रहे हैं।

और इसके बाउंड्री से लग के एक--

और बहोत से लोग यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं।

बहोत सारे घास और पेड़ पौधों से ढका हुआ है दिखने में यहां बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे हैं और बीच में पत्थर के बीच से--

अवेलेबल हैं और बड़ा सा डीप फ्रीजर है।

बच्चों के खेलने के खिलौने के साथ साथ--

बाउंड्री पर टाइल्स लगी हुई है।

पौधों की तरह ही रेहते हैं।

इसमें एक खिड़की दी गई है।

के बाजू में नदी या तलाब है।

जोकि रेड कलर का है और इसमें सभी प्रकार की वराइटीज रहती है।

जिसमें हल्के हरे हल्के लाल और गेहरे लाल रंग की--

एक सोलर पैनाल हैं जो की घर के छत पर लगी हुई हैं इसका यूज करके हम--

दूध दहीं और इसके अलावा बिसलेरी की बॉटल्स भी मिलती हैं।